अ सीढ़ियों से ऊपर जाने का है ग्रिल है कांच कै कांच का मीरर लगा हुआ है।

और बोटले रखी हुई है यहाँ पर कोई नहीं है सुना अ सुना मचा हुआ है।

अग रेड कलर की गाड़ी है। एक रूम के अंदर गाड रखी है गाड़ी।

अ अ एक कार गराज में खड़ी है।

एक आदमी खड़ा हुआ है ब्लू कलर की प पेजामा और ब्लू की ड्रेस में और मास्क लगाया हुआ है ओ।

ये एक रोड रोड है। रोड के बीच में मूर्ति बनी हुई है।

ये एक स्कूल है। क्रिस्टन स्कूल लग रहा है औ --

और उम्म अ रेड कलर का कार्पेट बिछा हुआ है। स्टेज के ऊपर पूरा ब्लैकआउट है। सिर्फ उसके ऊपर रोशनी आ रही है।

अ गाड़ी खड़ी हुई है। दो कार हैं।

और कोई भी यहाँ पे एक क्रिसमस ट्री भी है।

और वो ब्लैक कलर की अ टी-शर्ट पहना हुआ है।

पुराने जमाने जैसा एंट्रेंस गेट बना हुआ है।

वह पे इनबॉक्स लिखा हुआ है जो सामने दरवाजे दिख रहा है गोल्डन कलर का --